यहाँ दो दरवाजे है दरवाजे लोहे के है एक ग्रे कलर मे है एक येलो कलर मे है ये दरवाजो के पीछे एन्गेरे हैं एन्गेरे लोहे के हैं ।

यहाँ पर एक आ रु कमरा बना हुआ है इसके पास में खम्बा बड़ा सा है खम्बे के पास में एक ब्लू कलर की छत हैं ।

यहाँ पर बहुत सारे पर्दे लगे हुए है पर्दे वाइट है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं।

एक सवारी बस में बैठ रही है इसके पास एक झो बैग है एक झोला है झोला --

वो अलमारी के पास में दो पिंजरे है पिंजरो का कलर ग्रीन है।

यहाँ एक जिम है जिसका कलर पिंक है ऑरेंज है ग्रीन है यहाँ एक चद्दर लगी हुई है इसकी जमीन का कलर ग्रीन हैं।

ये ब्लैक है यहाँ पर कुछ लड़के है इस इसमें से एक लड़के ने वाइट टी-शर्ट पहेन रखी है एक ने ब्लू शू टी-शर्ट पहेन रखा है इसने रेड टी-शर्ट पहेन रखी है।